तस्वीर में ब्लू कलर के पेन करते हुए वॉल दिखाई दे रहा है।

पहाड़ जो थोड़ा ब्लैक ग्रीन में दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर या आम के पत्ते से कुछ आला बनाकर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर मे स्टेज के डे डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

यह स्टेज है जो बहुत सारे फूल से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

रूम जो इसमें दुकान जैसा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर मुझे एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड नजर आ रहा है।

तस्वीर में जो एक बस दिख रहा है ब्लू कलर में।

व्हाइट और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।

में जो बहोत सारा लाइट बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में।

ये तस्वीर में जो चीज जो एक से बनाया हुआ भी दिखाई दे रहा है।